पूल के नीचे पानी है उस न --

पेड़ के बीचो-बीच एक बड़ा सा खम्भा है ।

रहा है उसके बाद टीचर है उसके बगल में एक --

लेडीज है वो अल्लाऊसमेंट कर रहा है । अल्लाऊसमेंट उस साड़ी --

एगो पाया में डीलारे डीलारे --

सो रहा है एक ठो और हाथी है जो देवाल में पारा हुआ है।

देवाल का रंग चॉकलेटी कलर का --

है ये पेड़ का एने किस चीज का पेड़--

है उसमें एक कॉलेज है कॉलेज --

ये एक क्लास है उसमें ढेर सारा बेंच --

रस्सी है उसपे से एक बॉडी --

किल का चिन्ह है उसके ऊपर मोटर साइकिल लिख --

कट का निशान बनाया हुआ --

एक लो एक ल आदमी मुरेठा बाँधा हुआ है एक --

दाना रखा हुआ है । इस गुफा में एक छेद है ।

नीचे एक ठो अल्लौंसमेंट कर रहा है । अल्लौंसमेंट --

कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है उसके बाद हम आदमी --

काफी झूला वगैरा सब कुछ है उस गार्डेन के बाहर --

एक बड़ा सा दू महला घर है और लगता है कॉलेज --

ता शानदार सा मस्त एकदम घूमने वाला जगह है।